एक पैथोलॉजी की शॉप देख रहे हैं इसमे रेड कलर की चेयर रखी हुई है।

यहां पर हरे रंग के चादर भी ढके हुए हैं।

यहां पर काफी लोग भी इकट्ठा हुए हैं।